स्विमिंग पूल है इसमें नहा रहे है कई लोग है पांच छे लोग तीन लोग तो बैठे हुए है पांच लोग नहा रहे है।

पीछें पहाड़ दिख रहे है आसमान नीले-नीले दिख रहे है बहोत सु गहरा और सुन्दर पानी दिख रहा है।

एक आ दो ऑटो दिख रहे है अलग-बगल में पेड़-पोधे दिख रहे है।

और कुछ काले पहने है कुछ क्रिसमस डे वाला लाल पहना है और बहोत सुन्दर-सुन्दर सजें हुए हैं।

और कई ठो मंदिर है एक हाथ दो मंदिर तो हरा-हरा दिख रहे है।